दो बड़े बड़े सिंक भी हैं जिसके अंदर टोटियां हैं और सिंक का कलर व्हाइट है।

इसके अंदर एक कार खड़ी हुई नजर आ रही है जिसका कलर व्हाइट है।

इसका कलर व्हाइट है और पीछे की ओर बहुत सारी कुर्सियां भी है।

और बहुत सारी कुर्सियां भी यहां पर वाइट कलर की रखी हुई है बहुत भीड़ भी है यहां पर।

इसके अंदर साइडों में कुछ डिजाइनदार सरिया टाइप में गेड बना हुआ है छोटे छोटे।

जिसके अंदर बहुत सारे ओप्पो वीवो के बोर्ड लगे हुए हैं।

और बड़ा सा खंबा भी है यहां पे और एक स्कूटी व्हाइट कलर की है आ बैटरी रिक्शा भी यहां पे खड़ा नजर आ रहा--

एक लोहे का स्टैंड लगा जिसपे अपने ड्रॉइंग बनाए हुए हैं।

इसके अंदर पीछे की ओर एक बड़ा सा मंदिर नजर आ रहा है।

और बड़े बड़े बोर्ड भी यहां सामने की ओर हैं।

इसके अंदर एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है जो पीछे की ओर दिख रहा है।

और एक यहां पे भी बिल्डिंग ब बनी हुई नजर आ रही है।

इसके अंदर जमीन में हरी हरी कुछ घास नजर आ रही है।

और लाइट भी लगी हुई है सामने एक दीवार है।

दीवार पे पुतले बने हुए हैं व्हाइट कलर के।

सामने एक छोटा सा पेड़ लगा जो ईंटे से गोल गोल घुमा हुआ है।

अ पीछे की ओर बड़े बड़े पेड़ भी नजर आ रहे हरे भरे।

ये एक बड़ा सा मॉल है जिसके ऊपर वाइट दीवाल दिख रही है।

नीचे की ओर बहुत सारी दुकानें भी नजर आ रही हैं जिसके अंदर शीशा लगा हुआ दिख रहा --

बाइक भी खड़ी है और पेड़ों पर गोल गोल लाइटें भी इसके अंदर बहुत सारी लगी है।

इ सके अंदर सामने की ओर ऊपर वॉल एक बोर्ड लगा हुआ नजर आ रहा है।

बहुत सारा यहां पे ऑरेंज कलर का फर्नीचर लगा हुआ है लोहे का।

कैडबरी की बड़ी बड़ी लगी हुई चॉकलेटे भी और नीचे साबुन दिख रहा है।

इसके अंदर एक बच्चा बैठा हुआ है जिसके ऊपर कपड़ा ढका हुआ है।

औसी के सर पे क्लिप भी दो लगी हुई है और एक क्लेचर लगा हुआ है।

यह एक बड़ी सी दुकान है जिसके ऊपर वाल ब्लैक कलर का पंखा लगा है।

ऊपर की ओर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जो लाल कलर का है।

इसके अंदर बहोत सारे केबल वायर नजर आ रहे हैं।

पीछे की ओर व्हाइट व्हाइट पूरा लगाया और लाल स्पेलिंग से लिखा हुआ--